अअअ जो रनवे पर --

खड़ा है। यह देखने में बहोत ही अच्छा और सुंदर लग रहा है।

किसी आदमी का परतिमा बनाया गया है।

यहाँ पर एक रेलवे असटेशन है।

कार को ही बोहोत ही --